यह एक ऑफिस है इसमें बहुत से बैलून लगे हुऐ है नारंगी पिले वाइट रंग के बैलून का उपयोग किया गया है सजावट के लिए --

भगवान श्री किशन के चारो और माला से सजाया गया है उनके चरणों पे भी कुछ फूल अर्पित किये गये हैं।

प्लेटो में चमच्च भी है साथ ही पांच खाली प्लेटे हैं।

जोकि ऊपर की ओर जा रही है।

यह एक समुन्दर का नज़ारा है जहाँ एक बड़ी-सी नाव है। साथ ही उसकी बाई और एक छोटी नाव है।

यह एक ऑफिस है जहाँ हमे नीले रंग की केबिन बने हुई दिखाई दी रही है।